स्कूल में हमें कुछ ऑफिशियल मीटिंग होते हुए दिख रहा है जिसमें बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

गाड़ी के बोगी दिख रहे है जो हल्के रेड और ब्लू कलर के है।

ऊपर बहुत सारे दरवाजे वगैरा देखे जा रहे कुछ हरे हरे पेड़ वगै--

हाथ में कैरी बैग लिए हुए हैं कुछ ने हेलमेट पहने में जो ब्लैक कलर का है और बहोत सारे बाइक है जो --